जिसमे अउम ग्रीनरी दिखायी दे रही हैं और कहीं कही कही रॉक्स डले हुए दिखायी दे रहे हैं नीला आसमान दिखायी दे रहा हैं जो की काफी ज्यादा साफ मौसम नज़र आ रहा है।

ये काफी ज्यादा पुराना पेड़ नजर आ रहा है जो की पूरी तरह सुख चुका हुआ है ये इवनिंग टाइम की ये पिक्स लग रही है और आसमान साफ नजर आ रहा है ।

ऐसा लग रहा है की यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कूदे दिखाई दे रहे हैं हरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ चट्टानें दिखाई दे रही है।